कवर्स वायर्स पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर हमे एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

काउंटर के पास एक चेयर भी पड़ी हुई नजर आ रही है।

बकरियां चारा खाती हुई नजर आ रही है।

एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर हमे बहोत सारे कप रखे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर हमें बहुत सारे शोपीस --

यहां पर हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

आसपास हमें बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

आसपास हमें बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही हैं।

बाहर हमें कुछ व्हीकल्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं।

यह पिक्चर हमें एक बजार की नजर आ रही है।

यहां पर हमें कुछ लेडिज दिखाई दे रही हैं।

यह पिक्चर हमें किसी कॉलेज की नजर आ रही है।

यह पिक्चर हमें किसी गौशाला की नजर आ रही है।

यहां पर हमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

आस पास बहोत सारे पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

ग्राउंड में हमें कुछ लड़कियां चार्ट पेपर लेकर खड़ी हुई नजर आ रही है।

यहां पर हमें बोहोत सारे लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें बहोत सारे गमले रखे हुए दिखाई दे रहे है।

पास में हमें एक मंदिर भी बना हुआ नजर आ रहा है।

ट्रैक्टर हमें एक नीला और एक लाल रंग का नजर आ रहा है।